एक दूसरे को देख रहै हैं कैसे ड्राइंग बन रही सब अपनी अपनी बना रहै हैं और एक मैडम है जो खड़ी हुई है व्हाइट कलर का गुर्फा पहनते हुए वो देख रही है बच्चों को बच्चे क्या कर रहै हैं इसमें --

एक रेड फ्राक पहनी है। एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी है उसके पीछे नाम लिखा है कॉलेज का एक अकैडमी का नाम लिखा है। बैनर लगा है बड़ा सा।

और अंकल ऑन्टी बैठे हैं चेयर पे इसपे और लाइटें लगी हुई है ऊपर से लगा हुआ है ऊपर फैन लगे --